ढेर सारे लोग स्टेट बैंक ए_टी_एम के सामने लाइन लगाए हुए दिख रहे हैं।

डार्क रेड कलर के मैट बिछे हुए दरवाजों के सामने दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ झंडा दिख रहा है।

जिन्होंने अपने सर पर पगड़ी पहनी हुई है।

दूर हमें एक आदमी दिख रहा है कुछ लाइटें जलती हुई दिख रही है।

ये एक हारमोनियम है जो कि बजाने के काम आता है।

और हारमोनियम का कवर भी है जो कि इसे ढकता है।

ये किसी एक कैफे या रेस्टोरेंट का सीन लग रहा है जिसमे ढेर सारी अंदर लाइटें जल रही है।

है और एक ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर की बॉटल भी है और व्हाइट कलर के स्वीचेज हैं।

जहां बाहर बेरीकेट्स लगे हुए हैं और बड़ा सा दरवाजा है।

बाहर पेड़ पौधा बाहर एक बहोत बड़ा सा पेड़ है। आस पास ढेर सारी घासी उगी हुई --

ये किसी बाहर रोड के आसपास के मोन्यूमेंट का सीन दिख रहा है।

जिससे ये पता चल रहा है कि लोगों ने ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं तो ये ठंडी का मौसम है।

आस पास ढेर सारे पेड़ पौधे दिख रहे एक स्कूटी दिख रही है।

एक हेलमेट ढ़ेर सारे कागज वाले डब्बे उ और लाइटें और उनके पीछे ढ़ेर सारे प्लास्टिक बैग्स लटके हुए दिख रहे हैं।

ये किसी एक चर्च के अंदर का सीन दिख रहा है।

जिसमें पूरी चर्च की दीवालों पे जीसस बने हुए हैं।

पीछे जीजस की मूर्ति बन रखी हुई है और ये एक दो तीन चार पांच छः सात आठ लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

लास्ट की बस एक थोड़ी ऑरेंज कलर की है और पीछे पेड़ पौधे हैं।

और सीढ़ियों का कलर बीच में व्हाइट और आसपास डार्क ब्ल्यू डार्क ब्राउन --

ये एच_डी_एफ_सी बैंक ए_टी_एम के बाहर का सीन दिख रहा है।

और रास्ते के दोनों तरफ व्हाइट कलर की रेलिंगे लगी हुई है।

ये हमें किसी एक मोन्यूमेंट या बिल्डिंग के पीछे का सीन दिख रहा है।

दीवालो का कलर लाइट क्रीम कलर का है ऊपर आसमान दिख रहा है धूप चमक रही है जिससे दिन का समय लग रहा है।

प्लास्टिक के थोड़े डब्बे दिख रहे जिसपे डार्क लाइट ब्राउन कलर की टेप लगी हुई है।

और ढेर सारी लाइटें जल रही हैं और हमें कुछ लोग भी और एक फीमेल का हेड भी दिख रहा है।

ढेर सारी बाईकें और सगड़ी खड़ी दिख रही है।